यहां पर एक महिला काम कार्य कर रही है। किसान लोग आते हैं। एक किसान बाहर खड़े हुए है।

आइसक्रीम पेस्ट्री चॉकलेट वगैरह रखा हुआ है। ऊपर लाइट से जलता हैं।

पेट्रोल डीजल डाला जाता है। यहाँ पर अच्छी फैसीलिटी है।

चारो तरफ हरियाली हुई हैं।

चावल। इसमें एक खम्भा लगा हुआ हैं बिजली के लिए। और इसमें किसान काम करते हैं।